कैश को निकालने के लिए इसमे कार्ड डालके पिन --

यह एक इंडिगो एरोप्लेन है।

और यहां पे वर्कर के बैग भी रखे हैं।

यह एक बस स्टैंड का फोटो है।

यह फोटो एक हॉल की है।

बहोत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है।

यह फोटो एक गार्डेन की हैं।